जिसके ऊपर काले अक्षरों में दीवार पर नाम लिखा हुआ है एवं बहोत ही अच्छी सजावट की गई है।

या फिर कोई ऑफिस है जिसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं मीटिंग कर रहे है या फिर बिजनेस की बातें है।

यहां पर दुकान के सफेद कलर किया हुआ है एंड बहुत ही अच्छी सुख सुविधाएं हैं।

उगी हुई नज़र आ रही है बहुत ही अच्छी हरियाली है बहुत ही अच्छा खेत है पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है।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

यहां पर मुझे एक फुटकर व्यापार की दुकान दिखाई दे रही है जिस पर जहां पर बहुत सारे लोग एकत्रित होए हुए हैं।

घर दिखाई दे रहा है एव इसके चारों ओर--

कि दुकान दिखाई दे रही जिसमें अंदर बहुत सारे मोबाइल है ओप्पो वीवो --

एवं दरवाजे दरवाजे से लेकर कुर्सियो तक भी यहां पर अच्छी बैठने की सुविधाएं हैं सफेद कलर किया हुआ है।

बांध बनाने के लिए बहुत सारी खनिजों की जरूरत होती है यहां पर एक बांध बना हुआ है।

यहां पर मुझे ये कोई सरकारी कार्यालय नजर आ रहा है और यहां पर कुछ व्यक्ति भी --

यहां पर मुझे एक मिठाई की दुकान दिखाई दे रही है ये फुटकर व्यापार की दुकान है यहां पर लड़डू--